इसमें में काले रंग का काच लगा हुआ है।

रिफाइन ऑयल और सूजी और ब्रेड --

यहां एक कांच का दरवाजा है दरवाजे के अंदर एक आदमी खड़ा है जो हल्के आसमानी रंग का शर्ट पहना है।

काले रंग का पैंट पहेना है और हाथ में ए--

गुब्बारा लगाया गया है तिरंगे रंग का गुब्बारे का रंग हरा --

जिसने की बनियान और पैंट पैहन रखी है नीचे रेड कलर का--

यहां पे तीन झंडे लगे हुए हैं।

यहां बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है पहाड़ भूरे रंग का है पहाड़ पे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहें--